यह व्यक्ति एक धोबी का काम कर रहा है। मुंह में मास्क लगाया हुआ है ब्लैक कलर का।

पूरी सातों लड़कियों ने हाथ ऊपर करके योगा किया है सामने की चार लड़कियां--

दोनों साइड सफेद कलर से पेंट पुता हुआ है कांच का मिरर का काम किया गया है।

बाइक के बगल में कुछ शोकेस दिख रहे हैं वहां पर मां सीता लिख रहा है।

दुकान के अंदर चश्मे ही चश्मे दिख रहे हैं ऊपर सीलिंग में लाइट दिख रही है।

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो है यहां पर खाने पीने का सामान दिख रहा है।

चारों साइड तालाब के पेड़ पौधे दिख रहे हैं हरी हरी घास दिख रही है।